और छोटा छोटा पेड़ दिखाई दे रहे हैं। दूर-दूर मकाने दिखाई दे रही है और कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। मौसम भी बहुत ही सुन्दर और काफी साफ मौसम है।

यह एक बड़ा सा शोरूम है।